--और दूसरी साइड से लोहे के एक ब्लू कलर का पाइप गया हुआ है ऊपर की साइड और सामने एक बड़ा सारा ईमारत जैसी बनी है।

ये एक पहाड़ी इलाके का फोटो है जहां एक बड़ा सारा पहाड़ बना हुआ है।

--और जो हरे पेड़ो से बड़े और छोटे ढका हुआ है।

ये एक चर्च के बाहर का फोटो है जहां आस पास हरे पेड़ लगे है और उसपे हरी लाइट लगी है।

--और एक आदमी ने हाथ पीछे करके खड़ा है और उसके पास एक बड़ा सारा पेड़ लगा हुआ है।

ये एक कैफ़े के बाहर का फोटो है जहां सामने कत्थई दिवार पे एक बहुत बड़ा सारा वाइट लाइट जल रहा है जिसपे पर्पल और ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है।

कैफ़े का बोर्ड ब्लैक कलर का है जिसपे सफ़ेद कलर से कुछ लिखा हुआ है और उसके निचे कांच की खिड़की दरवाजे बने हुए है।

सामने एक कांच के दरवाजे का शोरूम बना है और उसके ऊपर लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है और कार के पास कुछ तेल जैसा पड़ा है और कुछ कथई कागज पड़े हैं।

ये एक दुकान की पिक्चर है जिसके पास बड़े-बड़े आइसक्रीम के पोस्टर लगे हुए हैं जिसके पास एक टेबल है और लाल और पिले कलर की चेयर रखी हुई है।

--के ऊपर एक लकड़ी की घास की छपरी डली हुई है और उधर काफी सारे छोटे छोटे प्लान्ट्स भी लगे हुए है।